ये एक इमारत है जो देखने में काफी सूरत लग रही है।

यहां पे साइड में पेचकस--

और यहां पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहां पे कुछ प्याज की बोरिया है जो बहुत ही ज्यादा है जैसे लग रहा है।

और यहां पे कुछ बंदे जा रहे हैं।

की बहुत सी बिल्डिंगे और भी है जो इसके पास में है।

तारिके से खड़े हुए है कुछ महिलाएं भी है।

यहां कोई शॉप हैं या फूड का कोई मॉल है जिसमे टेबल्स --

ये एक अच्छी सी इमारत जैसे की कोई घूमने के लिए जगह हो।

की थैलियां रखी हुई है जैसा कि मैं देख रही हूं कि यहां पर एक काउच भी है और यहां पर --

और यहां पे एक पैन भी रखा हुआ है।

जिसका आगे बहुत सारे वाहन खड़े हुए हैं।

साथ में चिनाई का काम भी पड़ा हुआ है।